डालने के लिए आये हैं।

कुछ स्किन में लैपटॉप के स्किनर भी लगे --

यहाँ पर क्रिस्चियन समाज का एक मैरिज --

यहां पर किसी का मेरिज हो रहा है।

घर का जो गेट है गेट दिख रहा है।

यहाँ एक पहाड़ में एक पत्थर का गुफा --

पहाड़ है जो की बहुत बड़े-बड़े पत्थर दिख रहा है।

स्कोर के पोस्टर भी बना हुआ है।

शोरूम के जस्ट पीछे में एक पेड़ भी है ।

कुछ लोग खड़े है कुछ लोग बाइक पार्क कर रहे हैं तो कुछ लोग बात कर रहे है।

अगरबत्ती भी दिख रहा है मोमबत्ती के साइड में --